ब्रिज में चार-पांच खंभे मोटे-मोटे लगे हुए --

यहाँ कुछ लेते हुए जेंट्स दिखाई दे रहे हैं एक अ

संतरा और भी फल-फूल रखे हुये कुछ केले टंगे हुये दिखाई --

ज्वेलरी पहनी हुई दिखाई दे रही है।

खम्बे लगे हुए टी.वी. रखी दिखाई दे रही है यहाँ जेंट्स लेडिज --

हरा-भरा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे पौधे लगे बहुत सारे --

गाय बंधी हुई दिखाई दे रही है | यहाँ एक नीम का पेड़ है ।

दिखाई दे रही है | एक बस दिखाई दे रही है जिसमें जय माता जी लिखा हुआ है |

कुछ टीन शेड कुछ मशीने लगी हुई दे रही है यहां।

बिल्डिंगो सी दिखाई दे रही है कुछ कूबर-खाबर सामान डला हुआ।

बनाकर डांस करते हुए बच्चियां दिखाई दे रही है बसे दिखाई दे रही है बहुत से लोग खड़े दिखा --

दिखाई दे रही है जिन पर हरा-भरा जंगल हरे-भरे पेड़ --

इस इमेज मे यहाँ धुलाई गैरेज मे --

एक कार धुलती हुई दिखाई दे रही है एक लड़का उसे --

जिसमे पूरा दृश्य नक्शा बनाया गया दिखाई दे रहा है इस टेबल पर रखी हुई --

आम के पेड़ है लगे दिखाई दे रहे।

इगनोरी यहाँ बंधी हुई दिखाई दे रही है जो बहुत बड़ी हैं जिसमे कुछ --

और बहुत बड़ी-बड़ी क्यारियां बनी हुई दिखाई दे रही है।

ये फल-फूल वाले पेड़े लगे हुए दिखाई दे रहे है जो हरे-भरे --

तला हुआ दिखाई दे रहा है | इसकी शॉप दिखाई दे रही है | टीन सेट में इसकी शॉप लगी हुई है ।

यह नमकीन की बर्निया ब्रेड की चॉकलेट की बर्निया रखी --